यह चित्र बहुत सुन्दर हे प्रकतिक खूबसुरति को दरसाते हुए यहाँ दोनों और से झरना बह रहा हे यहाँ पर चारो और हरियाली ही हरियाली हे।